यह आगे शो के लिए एक ट्रेन की एक छोटी-सी पटरी और ट्रेन लगी हुई है उसके ऊपर।

यह एक छोटी-सी गली दिख रही है जिसमे एक आदमीकैमरा लेकर खड़ा है जो की कुछ शूट कर रहा है।

यह एक मंदिर है जो की लाल और सफ़ेद रंग से पुता हुआ है मंदिर में --

येलो कलर में है चेयर्स कुछ वाइट कलर में है जो की बहुत सुन्दर लग रही है डेकोरेशन भी बहुत सुन्दर हुआ है यहाँ का।

कॉस्मेटिक ब्रश बैग बुक्स --

कुछ यहाँ से गुजरते हुए नहीं दिख रहे --

नदी में नाव जाते हुए दिख रहे हैं नाव के ऊपर बहोत सारे लोग है जो की कही जा रहे है।

फ्रूट्स है बहुत फ्रेश दिख रहे है हमें यहाँ।